यह एक स्टेस हैं जिसमें सर्कस दिखाई देते हैं और यहाँ पे तरह-तरह के जादू भी दिखा दिखाते हैं और यहाँ पे बोहोत सारे लाइट जलते हैं और यहाँ पे बोहोत सारे आदमियाँ सर्कस देखते हैं।

जो बहुत सुंदर दिखता है।

सब चिट्ठी आई। जिसके-जिसके होते हैं वो बाँट देते हैं। इसमें एक लड़का भी खडा है।